सामने एक बिल्डिंग है जो काफी बड़ी है।

जिसके किनारे दो छोटे छोटे पौधे लगे हैं पास में दो पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे मेनू भी रखा हुआ है आसपास काले लाल रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है।

यहां पर एक बैंक है यहां पर एक मशीन रखी हुई है।